इस तस्वीर में देखने से पता चल रहा है की यह ऊपर से खीचा गया फोटो है जिस मे पानी और चारो तरफ पेड़-पौधे ही दिख रहे है ।

और कई सारे आदमीयो भी दिख रहे हैं। राइट तरफ एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो की बहुत सुंदर है और ऑटो में लोग भी बैठे हुए हैं।

यह फोटो एक पार्क का लग रहा हे जिस में एक व्यक्ति फूलो कि और तथा पार्क की फोटो ले रहा हैं ।

और सामने में जो तस्वीर है वो एक कोचिंग है जिसका नाम सेटअप लर्निंग पॉइंट है वो सी_बी_एस_सी आई_सी_एस_ई और बिहार बोर्ड बी छात्र को सिक्स से टेन तक पर शिक्षा देती है।

यह व्यक्ति अपने बाइक पर बेठा हुवा हे और पीछे वाले पेड़ पर अरा हुवा हैं ।

यह नजारा बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लग रहा है।